और येलो कलर है और ब्लैक कलर है और चारों तरफ घना जंगल है।

दो गमले भी है गमलों में पौधे लगे हुए हैं और सीढ़ी का कलर ब्लैक है और कुर्सी भी टाइल्स भी लगा हुआ है।

एक लाल कलर का घर भी है और एक पोस्टर भी लगा हुआ है बहोत सारे लोग भी नहीं है।

और ऊपर में भी बैलून है और बहुत सारे लाल कलर की बैलून नीचे भी है टाइल्स व्हाइट कलर का है।

यहां पे चार बस खड़ी है और बस का रंग हरा और सफेद हैं और बस के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है और दो तीन लोग खड़े हैं और आ--

सामने में बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पर केंद्रीय विद्यालय नंबर वन लिखा हुआ है।

बाइक से जा रहे हैं और आदमी ने हेलमेट पहन रखा है औरत ने साड़ी पहन रखी है और स्कूल है ई बड़ा सा घर भी है।

बहोत सारे और गिट्टी भी रखे हैं बहोत सारे रड भी लगे हुए हैं।

और एक आदमी पगड़ी बान्हे हुए प्लसतरा कर रहा है बहुत ही पाइप भी है।

खिड़की हैं और बहोत सारे ए_सी लगे हुए हैं और चित्र भीं बने हुए हैं दीवाल --

यह एक मॉल है और इसमें बहोत सारे हॉर्लिक्स के डब्बे रखे गए हैं और एक औरत कुछ लिए हुए जा रही है।

और एक बाइक भी है जो ब्लैक और रेड कलर की है और दिन का समय है और धूप भी निकला हुआ है।